और गर्ल्स के लिए --

सभी लेडीज सामान खरीद रही --

और बोहोत सी लेडीज वर्क आ कर कराती हैं। सम काम बोहोत अच्छा होता है। पेमेंट थोड़ा ज्यादा --

पेरेंट्स को लेकर आते हैं और झूलते हैं। उसका रेंट भी है।

घूमते हैं खेलते हैं मस्ती करते हैं।

गरमा-गरम छोले तो अच्छे लगते ही है।

बड़े-बड़े पेड़ भी हैं। की मन कर रहा है की यहाँ से जाओ ही ना।

किसी सेण्टर की हो या किसी कॉले की हो।

पीछे की कुर्सियां तो अस्त-व्यस्त हैं। आगे की बिल्कुल ठीक हैं।

आकर के देख लीजिए। आप चेक कीजिये।

ये प्लीजरा होटल है यहाँ --

ऐसा लगता है कि प्रोग्राम की कोई --

किसी के पॉकेट मनी --

और बच्चे कामयाब भी हो जाते ए ।

हवाई जहाज के लिए ग्राउंड की आवश्कता होती है।

पानी मिलने से पौधे जल्दी बढ़ते हैं और हरा हरी ताजगी बनी रहती --

गर्ल्स को बॉयज को --

दुल्हन के आने का इंतज़ार हो रहा है म पंडत जी --

उसमे कान्हा जी बाँसुरी बजा रहे हैं।

और मंदिर में राधा कृष्ण जी के दर्शन हो रहे है। धन्य --

जैस डांस करना अपनी-अपनी सब फोटो खिचवाना --

सब कुछ मिलता है जैसे मिठाईयाँ सैंडविच टोस्ट ।

वह अपनी ही ट्रैन में बैठ कर चले जाते हैं।